यहाँ पर एक पाइप लगा है जो की सफ़ेद रंग का है और यहाँ पर अ प्लंब्स से खड़े हुए है आह पीले तथा लाल से--

यहाँ की जो कुर्सी और मेज है वो काले रंग की है पीछे की जो दिवार है वो सफ़ेद रंग की है।

नीले लाल और पिले इसमें बहुत सारे रंग है तथा यहाँ पर अ बहुत अच्छा आसमान है सफ़ेद और नीले रंग का --

इसने काही कलर की शर्ट तथा क्रीम कलर की पैंट पहनी हैं।

जैसा की मै देख पा रही हूँ की यह स्विमिंग पुल है जहां पे नीले जो सफ़ेद रंग का पानी है तथा यहाँ पर जो यह जो पोल बने हुए है लाल पीला हरे--

तथा उसने एक स पि लाल कलर का अपने सर पे पट्टा बांधा है।

और यहाँ की जो फरच है वो यहाँ पर पिले रंग की है।

और यहाँ पर शटर लगा हुआ हैं जो की सफेद रंग का--

और एक पीछे बैठा है जिसने हरे रंग के कपड़े पहेने है| यहाँ के जो फर्श है वो काले रंग की है।

जैसा की मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ यहाँ पर एक आंटी बैठी है।